बिल्डिंग के छत में रेलिंग भी लगी हुई है।

एक गद्दा बिछा हुआ है और कारपेट भी लगे हुए हैं।

एक गाड़ी गैरेज का हॉल का दृश्य है।

ब्रिज के बगल में बहुत सारे पिलर भी लगे हुए हैं।

रेलवे स्टेशन के बगल में एक मकान भी दिख रही है वह क्रीम कलर की है।

रोड के पास बहुत सारे व्यक्ति हैं।

रोड के बगल में बहुत सारे लोहे की पाइप लगी हुई है वह सारे व्हाइट कलर के हैं।